एवं मन्नत मागने के लिए आते है यहाँ पर बहोत सारे भी आदमी --

काफी ख़ूबसूरत दिखाई दे रहा है । यहाँ --